सामने में बहुत सारा खाने का सामान रखा हुआ है।

घर में बहोत सारा ट्यूबलाइट्स भी लगा हुआ है।

ऊपर में ट्यूबलाइट भी लगा हुआ है।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

टेबल पर दो येलो कलर का फ्लावर पॉट और पेन स्टैंड रखा हुआ है।

मुझे ये तस्वीर में कच्चा घर दिखाई दे रहा है।

सामने वाले टेबल पर बहुत सारा पेन कलर और वाटर बॉटल रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

आसपास बहुत सारे पेड़ पौधा भी लगा हुआ है।

और आलमारी पर बहोत सारा शैंपू रु रखा हुआ है।

सड़क पर बहोत सारे बाइक और स्कूटी दिखाई दे रहा है।

गेट के अंदर कई सारी गाड़ियां भी पार्क किया हुआ है।

और दीवार पर ऐ_सी और पंखा भी लटका हुआ है।

सामने में बहुत सारा कुर्सियां और टेबल भी रखा हुआ है।

कोने में दो फ्लैग भी टंगा हुआ है।

आंधे में बहुत सारा कुर्सियां और टेबल रखा हुआ है।

मुझे इस तस्वीर में एक बिल्डिंग के अंदर बहोत सारे आदमी बैठा हुआ नजर आ रहा है।

ऊपर में बहुत सारा ट्यूब लाइट्स और पंखा भी लटका हुआ है।

आस पास बहुत सारे पेड़ पौधा भी लगा हुआ है।

मुझे ये पिक्चर में एक बिल्डिंग दिखाई दे रहा है।

मुझे ये पिक्चर में बहुत सारा बिल्डिंग्स बना हुआ दिखाई दे रहा है।

उसके पीछे में एक बड़ा सा तेल का कंटेनर भी दिखाई दे रहा है।

मुझे इस तस्वीर में एक लंबा सा बिल्डिंग दिखाई दे रहा है।

और कई सारे छोटे छोटे कार्टून का डब्बा भी रखा हुआ है।

सामने में एक ब्लू कलर का टेबल भी दिखाई दे रहा है।

व्हाइट और पिंक कपड़ा से सजा हुआ है।

और कई सारे पेड़ पौधा भी लगा हुआ हैं।

और कई सारे गाड़ियां भी दिखाई दे रहा है।

और नीचे में ग्रीन कलर का प्लास्टिक चेयर भी रखा हुआ है।

टेबल पर कंप्यूटर भी रखा हुआ है।

आस पास कई सारे बिल्डिंग्स भी बना हुआ है।

आसपास बहुत सारे पेड़ पौधा भी उगा हुआ है।

और अंदर में फेवीक्विक और बहोत सारा ए फोर साइज पेपर भी रखा हुआ है।

मुझे इस तस्वीर में हरा भरा फिल्म दिखाई दे रहा है।

और आस पास में डिस्को लाइट भी लगा हुआ है।